इधर बस के यात्री चढ़ने के लिए रेडी भी तो हुए हैं बाकी कुछ लोग--

दिखाई दे रही है लेकिन कुछ अह

मुझे इस चित्र में एक एंबुलेंस दिखाई दे रही है।

और कुछ व्यक्ति बाहर से आ रहें हैं।

मुझे इस चित्र में एक मस्जिद दिखाई दे रही हैं।

कुछ लोग मस्जिद के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं।

और बतख पानी में तैर रही है और --

कुछ लोग बतख को देख रहे हैं जैसे मैं और तुम।

विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जो अच्छे लग रहे हैं।

ग्रॉसरी का मॉल दिखाई दे रहा है।

एक रेलवे लाइन दिख रही है और उस पर--

लोहे के एंगल भी गड़े हैं और कुछ एंगल सही है।

बगल में एक पेड़ पौधा भी हरा हरा दिखाई दे रहा है।